इस तस्वीर में खुला आसमान नजर आ रहा है।

इस छवि में रंग बिरंगे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में खुला आसमान नजर आ रहा है।

ऊपर दिए गये इस तस्वीर में दो तीन चट्टान नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक रास्ता नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक ए_सी दिखाई दे रहा है।

ऊपर दिए गए चित्र में एक आदमी मछली मारते हुए दिखाई दे रहा है।

ये छवि एक पेंडल की है।

ऊपर दिया गया छवि में एक सीढ़ी नजर आ रहा है।

यह तस्वीर एक मॉल की है।

इस छवि में एक पेंडल दिखाई दे रहा है।

ऊपर दिए गए चित्र में रास्तों पे गड्डे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

इस छवि में एक इंडिया का झंडा दिखाई दे रहा है।

ऊपर दिये गए चित्र में बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर एक जिम की है ।

ऊपर दिए गए चित्र में एक गेट दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहुत सारे खिड़की दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में बहोत लोग दिखाई दे रहे हैं।

ये तस्वीर एक मंदिर का है।

इस तस्वीर में चार पोल दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में गेट नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में दो आदमी नजर आ रहे हैं।

ऊपर दिया गया छवि में एक घर नजर आ रहा है।

ऊपर दिए गए चित्र में बहुत सारे कार्टून दिख रहे हैं।

ये तस्वीर एक जिम की है।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

इस तस्वीर में खुला आसमान नजर आ रहा है ।

इस तस्वीर में टीना नजर आ रहा है ।

इस चित्र में कूड़ादान नजर आ रहा है।

इस चित्र में दो तीन आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इस छवि मे डमरू नजर आ रहा है।

इस छवि में एक रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है।